दाम एक सौ तीस बेहद छूट --

यह किसी घर की तस्वीर ली गई है नीचे से और यहां पे बाइक स्कूटी बूलेट --